दूर दूर तक हरे भरे झाड़ है।

यहां पर बहुत से लोग ठहरे हुए हैं।

में बहोत सारा स्क्रैप माल दिख रहा है।

यहां पर एक टायर्स की शोरूम दिख रही है।

इस मैदान में एक आदमी नजर आ रहा है।

रास को सीढ़ियां भी लगे हुए हैं।

और बहोत सारे फूल की लड़े हैं।

और बड़े बड़े लाइट के फोकस लगाए हुए हैं।

और नीचे ग्राउंड में बहुत सारी कुर्सियां है।

जिस पर कैश काउंटर का पोस्टर --

इसको बहोत अच्छो से डेकोरेट किया गया है।

यहां पर कपड़ों की दुकानें हैं।

चारों तरफ हरे भरे झाड़ हैं।

अर गार्डन नीचे छोटे छोटे झाड़ है।

फ्यूबॉल खेलने का खंबा और बास्केट है।

यहां पर बहुत से कुर्सियां हैं।

फैंस का रंग येलो कलर का दिख रहा है।

यहां पर कमान जैसा दिख रहा है।

और उसके बाजू में एक बड़ा बी--

सैलोन में जाने के लिए उसका दरवाजा कांच का है।